ऊपर साइड एक टाइल्स लगी है बल्ब दिख रहा है राडे दिख रही है।

हरे कलर की मशीने दिख रही है बहुत सारी खिड़किया दिख रही है ऊपर साइड टीन का सेट दिख रहा है एक पंखा दिख रहा है ब्लू कलर की मशीन दिख रही है दीवाल वाइट कलर की दीवाल दिख रही है।

मैदान दिख रहा है गेट दिख रहा है चार मीनारे दिख रही है एक बडी मीनार दिख रही है।

एक वाइट कलर की बिल्डिंग बनी है बहुत बड़ी जिसमें बिल्डिंग के ऊपर एक खंभा लगा हुआ है एक पाइप लगा हुआ है बिल्डिंग के नीचे एक वाइट कलर के बाउंड्री खींची हुई है उसे बाउंड्री में एक बल्ब लगा हुआ है।

टेबल लिख रहे है टेबल में कुछ स्टूल्स रखे हुए है राइटसाइड मशीने दिख रही है देवाल दिख रही है वाइट कलर की दीवालो में फ्लेक्स लगा हुआ है ऊपर साइड टिन का शेड दिख रहा है।